इसमें आसमान भी दिख रहा है पोस्टर लगा हुआ है एक आदमी का फोटो है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

आदमी भी दिखते हैं ट्रांसफार्मर दिख रहे हैं लेकिन तार है सोलर है।

इसमें श्री श्री नील कंठ वासनीय माता मंदिर माँ दिलोरी स्थान पत्रास धनवान।

बगल में भी मंदिर है | उसमे बाग है बाग पर एक बैठी --

कार है पैदल बहुत सारे आदमी चल रहे है बहुत मकान दिख --

जूता पहना हुआ है देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है यह --

इसमें पेड़-पौधे दिख रहा है आसमान दिख रहा है नदी है नदी में पुल बनाए गये है।

देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसमें सीढ़ी बनाए गए है चढ़ने वाला भी बनाए गए हैं झुला है बच्चे सब झुला झूलते हैं पेड़-पौधा दिख रहा है आसमान भी --